खड़ा है हमरे इधर ताक रहा है ।

फूल लगाह लगा हुआ है और देखने में जो है सब खूब सुंदर लग --

और आगे से भी देखने से कएगो पेड़ दिखाई देता है। और देखने में सुन्दर लगता है।

अ पीछे से जो है ऊपर में बुझाता है कि लोहा का --

और देखने में जो है सो सुन्दर लगता --

उज्जर का बीच में डरीर पड़ा हुआ है। उजला उजला किस्म --

और एक आदमी है बैठा --

और देखने में जो है सो सुन्दर लगता --

मस्जिद टाइप का है ।

और चारों तरफ से चारो तरफ से जो है घास का फील्ड बना हुआ है ।

अ डंटा टाइप का दूगो ऊजर का --